अगल बगल में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

ये एक स्टैचू दिखाई दे रहा है किसी आदिवासी लोगों का। जो लोग कहीं जाते जा रहे हैं। बीच में कही जा रहे थे जो लोग बीच में रुक के रेस्ट कर रहे है। एक पेड़ दिखाई दे रहा है।

यह एक पहाड़ी एरिया है। बहुत सारे और बहुत ऊँचे-ऊँचे पहाड़िया दिखाई दे रहे हैं।

ये एक चिडिया घर है। यहाँ पे मोर खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक लडकी टहल रही है। अगल बगल में पेड पौधे बहुत सारे हैं।

उसके पास में दो गाय बैठी हुई हैं एक प्लास्टिक रखा हुआ हैं रेड कलर का--

और बड़े-बड़े जनरेटर इसमें--

शीशा दिखाई दे रहा हैं। खिड़की खुली --

कीचड़ मे सने उसके पेड़ो अगल बगल में खेती उ-उग चुकी है।